इस पिक्चर में हमें एक बड़ा--

और इस दुकान के अगल बगल में भी दुकानें--

यह और उस मूर्ति के सूंड--

में कृष्ण जी की मूर्ति दिख--

पौधे लगे हैं और उसके सामने--